इस उधयान मे जहा पे दो पेड़ और एक जड़ ए ए सटे हुए है ।

तस्वीर गया जंक्शन का है गया रेल्वे स्टेशन --

जहां पे बेठने की भी सुविधाये है और एक अ श्रमिका वहाँ पे अम साफ़सफ़ाई कर रही है झाड़ू लगा रही है।

जिसपे अ पिलर बने हुए है और काफी साफ सुथरा है।

एक शेहर से दूसरे शेहर जाने के लिए जो वातानूकूलित अह अ बस होती है।

गया के गांधी मैदान में डिज्नीलैंड से ली गई है यह फोटो जहां पर बड़ा टावर झूला है और यह काफी मनोरंजक होता है कई पर्यटक इस पर झूलने पसंद करते हैं ।

किसी पहाड़ के बहार का आ ये द्रश्य है। हरे भरे पेड़ है लगे हुए।